और पास में पेड़ पौधे हैं।

आस पास बाइक स्कूटर खड़े हैं।

यहां मुझे एक बड़ा सा हॉल दिख रहा है।

यहां पर मुझे बड़ा सा--

उसमें लोहे के सरिए --

उस पर संतरी नारंगी पेंट है।

यहाँ पर एक--

कुछ किताबे रखी है और--

हरी हरी वादियां पेड़ पौधे--

बड़ी सी हॉस्पिटल का बिल्डिंग है।

केक दिख रहा है।

यहां मुझे एक--

इस गार्डन में पेड़ पौधे--

पेड़ पौधे लगे हैं।

इसमें बहोत सारे लड़के--

बड़ी बड़ी दीवार दिख रही है।

यहां पर एक बोहोत पुराना कमरा दिख रहा है।

यहां पर एक बहोत बड़ी नदी दिख रही है।